क्या एक खेल मैदान का दृश्य है जो बिल्कुल सूखा है इसमें घास नहीं है।

इस चित्र के माध्यम से एक फर्नीचर का वह दर्शाया गया है।

इसमें बहुत सारे सोफे बनाए गए हैं जो लकड़ी के हैं।

यह एक हार्डवेयर का दुकान है।

इस चित्र के माध्यम से एक कार्यालय को दर्शाया गया है।

कमरे का मेन गेट पे बहुत सारे बैलून लगाए गए हैं।

जिसका फर्श में दो बाइ दो का टाइल्स सफेद रंग का यूज किया गया है।

कुछ कपड़े रैक पे रखे गए हैं।

जो बाथरूम के लिए है।

छोटी चलने वाली ट्रेन की पटरिया नजर आ रही है।

एक तस्वीर भी नजर आ रही है।

यह एक चाय की बहुत ही सुंदर दुकान है।

एक वृक्ष के नीचे जो बहुत बड़ी गेट है वो देवघर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का है।

और एक व्यक्ति समान खरीद खरीदते नजर आ रहे हैं।

जो कि यह देवघर में स्थित है।

यह एक दुकान का दृश्य है।

और दुकानदार कुछ काम कर रहे हैं।

लैपटॉप या कंप्यूटर है जो नजर आ रहा है ।

यह एक नीरू फर्नीचर का दुकान है।

ड्रेसिंग टेबल बनाया जाता है।

यह एक दुकान का दृश्य है जिसमें लकड़ी का रैक बना हुआ है।

यह एक दुकान का दृश्य है जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट रखे गए हैं।

लड़की यूज करती हैं महिला यूज करती हैंटिकली हैं।

जिसमें बहुत बड़े गेट बने हुए हैं।

और पीछे एक लटकता हुआ किरान जैसा लग रहा है।

यह एक कमरा है जिसमें फिटनेस संबंधित कुछ जिम के स_सामान रखे गए हैं।

कमरा का दीवार व्हाइट पेंट से पुट्टी की गई है।

यह एक ब्लॉक का तस्वीर है।

एक बहुत सुंदर कमरे का दृश्य है।

और बहुत सारे बैलून छत से भी लटकाए गए हैं जो रिबन बंधे हुए है।

पीछे की और पथलो पे काईया नजर आ रही है।

जो जय दुर्गा मेमोरियल के नाम से है।

यह एक खेत का दृश्य है।

कुल मिलाकर बोले तो यह एक खेत है जिसमें खेती अच्छी हुए हैं।

इनमें दो कुर्सी भी नजर आ रहे हैं।